यहां पे है बहोत सारे लोग जो यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।

और यहां पे हैं टैबलेट जो साइड में रखा गया है।

पटरी है और यहा खाली शेखपुरा नाम लिखा हुआ है स्टेशन का।